और हले हरा कलर का गेट --

सामने एक टेम्पो दिख रहा है।

उसमें फूल से सजाया गया है।

होम हॉस्पिटल लग रहें हैं।

तीसरी मंजिल का मकान दिख रहा है |